ओ आदमी है और बहुत अच्छा दुकान दिखने में लग रहा है।

चारों तरफ से घिरा हुआ है सफेद रंग का मकान दिख रहा है बहोत--

तेल साबुन शैम्पूल सब कुछ दिखाई दे रहा है बिस्कुट गोंद और पन्नी में कुछ --

का बनाया गया हुआ है बहुत आदमी बैठा हुआ हैं।

एक खाली टेबल दिखाई दे रहा है और लाइट दिख रहे हैं।

बहुत लाइन से मकान बने हुए हैं खिरकी दिख रहा है खुला हुआ है।

टाइल्स लगा हुआ है रास्ते में और एक आगे पेर है पेर के नीचे सुखे बहुत पत्ते गिरे हुए--

बॉल रखे हुए हैं और बॉल हरा नीला सब जल रहा है।

गोल पिलर दिखाई दे रहे हैं एक लड़का है जो कपड़ा--